वॉटर पा वाटर दिखाई दे रहा हैं यहां बीच में फाउंटेन भी लगा हुआ नजर आ रहा है और आसपास यहां पर कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर --

इस इमेज में सामने इत्था मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर हरी घास घास लगी हुई है।

मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर --

जहां पर गेट नजर आ रहा है और सामने एक झूला भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे सामने यहां पर कुछ दुकानें बनी दिखाई दे रही है।

और सामने यहां पर एक रेड कलर की मोटर साइकिल भी खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर सामने एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर सामान रखा नजर आ रहा --

शोप्लांटस लगे नजर आ रहे--

नीचे कार भी खड़ी नज़र आ रही है और साइड मे एक पोस्टर भी बना --

जहां पर ऊपर बोर्ड भी लगा नजर आ रहा हैं।

जहां पर स्लाइडर भी लगा हुआ है और यहां पर कुछ लोग इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं यहां पर --

इस इमेज में सामने यहाँ पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक स्टेज बना नजर आ रहा है और यहाँ पर --

यहां पर टोस्ट के पैकेट्स रखे हैं।